उसका गेट खुला हुआ है पास में पेड़ है सब भी बहोत सारे हैं।

को कोई चीज का संस्था है।